देखिये यहाँ पर एक ग्लास में कुछ जूस सा रखा हुआ है और इसमें एक चम्मच सी लगी हुई है और इसमें जूस पीने के लिए एक गोला आकार की डंडी भी लगी हुई है।